बहोत सारा मछली है पिक्चर में एक आदमी है मास्क लगाया हुआ है एक ओ औरत बेच रही है एक मर्द बेच रहा है।

टाइल्स लगा हुआ है चौकी रखा हुआ है।

झूम उजला ब्लू बैलून लगा हुआ है बहुत सारा आदमी है खड़ा है एक औरत है साड़ी पहनी हुई है।

कुर्सी लाके रखा हुआ है पक्का है एक आदमी है टी-शर्ट पहना हुआ है।

शूट वाली है एक बच्ची है।

चिड़िया उड़ रही है असमान दिखाई दे रहा है।

रखा हुआ है बगल में बहुत छप्पर लगा हुआ है बनेगा तो और अच्छा लगेगा ।